अगल बगल में बहुत से बड़े बड़े बंबू के पेड़ लगे हैं।

यह चित्र में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे ऊपर में लाइट लगे हुए हैं।

और यहां पर एक गर्म करने गर्म पानी करने वाला मशीन भी रखा हुआ है।

पीछे में एक डैम का चित्र है जहां पर बहोत सारा पानी बह रहा है।

यह चित्र में बहुत से बड़े बड़े पेड़ है।

और यहां पर एक लाल कलर का बस और है एक व्यक्ति वहां पर भी --

सामने में बहोत सारा डेस्क रखा हुआ है।

पीछे में बहुत सारे वाहन लगे हुए हैं।

और बहुत सारी नर्स कुछ कर रही है।

यह एक दुकान का चित्र है।

ऊपर में बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

बहुत से बड़े बड़े पेड़ हैं।

बहुत व्यक्ति कपड़े लगे हुए हैं और यहां पर एक खंभा भी लगा हुआ है।

यहां पर कुर्सी मे लिखा हुआ है।

पर एक व्यक्ति छाता पकड़ा हुआ है।

बगल में बहोत सारा बांस लगा हुआ है।